बुक की दुकान है जिसमें बुक की दुकानों में जैसे की हम लाइब्रेरी जिसको बोलते हैं लाइब्रेरी में काफी --

देखिए ये रोड किनारे पर जो ये यहाँ पर खाली जगह होती है। वहाँ पर ये --

है जोकि ये कोतवाली है और जैसे कि यहाँ पर --